यहाँ एक बच्चा गार्डेन में खड़ा है ये गार्डेन एकदम साफ सुथरा करके अच्छे से फूल से बनाया गया है।

जय माता दी ट्रेवल्स अच्छे ड्राइवर्स हैं अच्छे कंडक्टरस हैं ये मेनली यूज़ --

ये योगा क्लास है और अपने हेल्थ अच्छा रखने के लिए बच्चे योगा कर रहें हैं फैमिली के साथ प्रॉपर योगासन होता है सूर्य नमस्कार वो सिख रहे हैं ।

यहाँ पे मेन ले की अ गाँव के लोग एस कहीं के भी जब प्रॉब्लम में होते है तब जाते हैं इलाज करवाने या फिर डिलीवरी टाइम पे बेबी बर्थ टाइम इ सब टाइम मे ली जाते हैं लोग।